सामने एक व्यक्ति दिख रहा है जो ई रिक्शा की चाभी एक औरत को दे रहा है और और उसके पीछे एक मकान दिख रहा है।

मकान के बगल में एक स्कूटी दिख रही है।

सामने दो बैंक दिख रहा है उसके आगे एक बाइक दिख रहे है अगल बगल चार लोग दिख रहे हैं दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं।

और छोटे और बड़े चट्टान दिखाई दे रहे है उसके आगे छोटे-बड़े पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है।